दोस्तों लिनक्स operating system के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम कुछ basic commands का अध्ययन करेंगे
मैं ubuntu 1004 का इस्तेमाल कर रही हूँ
हम यह मानते हैं कि लिनक्स operating system के साथ शुरुआत कैसे करना है ये आपको पता है
यदि आप इच्छुक हैं तो
इस tutorial में हम देखेंगे कि commands क्या हैं और commands व्याख्याकार यानि interpreter क्या है
फिर हम सीखेंगे कि man man command के इस्तेमाल से लिनक्स में help कैसे पता करें
अब पहला सवाल है कि commands क्या हैं
सरल शब्दों में कहें तो लिनक्स commands ऐसे शब्द हैं जो दिए जाने पर कुछ actions या कार्य करते हैं
लिनक्स commands शायद ही कभी चार से ज्यादा अक्षर के होंगे जैसे कि ls who psआदि
commands lower case में होती हैं तथा वे case sensitive हैं चलिए एक उदाहरण देखते हैं
एप्लीकेशन menu applications menu में जाएँ
accessories को चुनें और फिर उपलब्ध options से terminal पर click करें
या terminal window खोलने के लिए अपने keyboard पर ctrl alt t press करें
अब हम एक prompt $ देख सकते हैं और this उसके साथ एक cursor भी है यहीं पर हमें command type करनी है
शब्दों में who type करें और enter दबायें
हम logged इन users के name देख सकते हैं वास्तव में हमने अभी एक command को एक्सक्यूट यानि निष्पादित किया है जो है who जो कि बताती है कि कौनकौन system में logged इन हैं
लेकिन ये कुछ अक्षरों की कौनसी चीज़ या entity है जो इन commands को actions में बदलती है
ये command interpreter का कार्य है जिसे shell भी कहते हैं
हम shell को program के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमारे और लिनक्स system के बीच interface की तरह काम करता है
हमें operating system में एक्सक्यूट निष्पादन करने के लिए commands enter करने की अनुमति देता है
लिनक्स में multiple यानि विविध shells installed करना संभव है और जहाँ उपयोगकर्ता अपने पसंद से उन्हें चुन सकते हैं
लिनक्स पर मानक यानि standard shell जो हमेशा/bin/sh के रूप में इन्स्टॉल्ड रहता है उसे bash bash कहते हैं the gnu bourneagain shell जो gnu suite of tools से है
commands जो हम इस tutorial में देखेंगे वह काफी सामान्य हैं और जो मामूली बदलाव के साथ अधिकांश लिनक्स shells पर चलती हैं
तथापि हम इस tutorial में प्रदर्शन के लिए shell के रूप में bash का प्रयोग करेंगे
वो इसलिए क्योंकि यह एक लोकप्रिय shell है और लगभग सभी unix के लिए वहनीय यानि portable है
दूसरे shells हैं bourne shell sh जो कि मौलिक unix shells है c shell csh और korn shell ksh
कौनto shell हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह देखने के लिए
terminal पर जाएँ और command echo space dollar in capital shell type करें और enter दबायें
सामान्य रूप से/bin/bash output है जो हमें bash shell देता है
काफी तरीके हैं जिससे हम अलगअलग shells को सक्रिय कर सकते हैं जो कि उन्नत tutorial advanced tutorials में देखेंगे
commands वास्तव में files हैं जिसमें programs होते हैं जो अक्सर c में लिखी जाती हैं
यह files directories में समाहित होती हैं command का संचय कहाँ हुआ है इसका to करने के लिए type command का प्रयोग कर सकते हैं
command prompt पर type space ps type करें और enter करें
यह बताता है कि ps कमांड असल में स्लैश bin bin directory में संग्रहित एक file है
जब हम command prompt पर command देते हैं तब shell directories की सूची में से command के name से मिलती हुई file को ढूँढता है
यदि इसका पता चलता है तो उस file का समरूप program निष्पादित होता है यदि नहीं तो command not फाउन्ड ऐसा error देगा
खोजे गए directories की सूची path variable द्वारा स्पष्ट रूप से बताई गयी है जो कि हम बाद में देखेंगे
अभी के लिए यदि हमें इस list को देखना है तो केवल echo space dollar path command type करें
बड़े अक्षर में और enter दबायें
जब commands की बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए
लिनक्स commands दो प्रकार की हैं : external commands तथा internal commands
external commands वह है जो अलग से files या programs के रूप में मौजूद है
लिनक्स में अधिकांश commands इसी प्रकार की होती हैं लेकिन कुछ commands ऐसी हैं जिनका कार्यान्वयन shell में ही लिखा जाता है तथा वे अलग files के रूप में नहीं होती
ये internal commands होती हैं
echo command जिसे हम बाद में देखेंगे वास्तव में एक internal command है
terminal पर जाएँ और command type करें
type space echo और enter दबायें
output echo को shell बुलेटिन के रूप में दिखाता है
अतः file देने के बजाय यह बताता है कि echo command का कार्यान्वयन shell के लिए internal है इसलिए इसे internal command कहते हैं
एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वह है commands की संरचना
commands एक या एक से अधिक शब्द के हो सकते हैं जो कि white spaces द्वारा अलग किए होते हैं
दूसरे case में पहला शब्द command का वास्तविक name है जबकि अन्य शब्द तर्क हैं
आर्ग्यूमेंट्स options expressions या file हो सकते हैं
स्पष्ट किए option के आधार पर एक command अलगअलग कार्य कर सकती है
साधारणतः उनके पहले एक single या double माइनस चिन्ह होता है जिसे क्रमशः short या long option कहते हैं
terminal window पर जाएँ और commands type करें और उनके outputs देखें
terminal window को clear करने के लिए clear type करें
उसके बाद ls type करें और enter दबायें
फिर से clear type करें और enter दबायें
ls space minus a type करें और enter दबायें
terminal window को clear करने के लिए clear type करें
अबls space minus minus all type करें और enter दबायें
फिर से terminal को clear करने के लिए clear type करें
अब ls space minus d type करें और enter दबायें
इस समय यह समझना काफी है कि कैसे options में बदलाव होने पर command का बर्ताव बदलता है
लिनक्स में हमारे पास काफी सारी commands हैं
हर एक में कई सारे अलग options हैं
commands को एक साथ संयुक्त भी कर सकते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हम दिमाग में कैसे रखें
सच में आपको इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि लिनक्स में उत्कृष्ट online help या मदद की सुविधा उपलब्ध है
man man command system पर सभी उपलब्ध command के बारे में डाक्यूमेन्टेशन या अभिलेख प्रदान करता है
उदाहरण के लिए ls command के बारे में जानने के लिए आपको terminal पर जाना पड़ेगा
ls तर्क के साथ man command type करें जो है type man space ls और enter दबायें
बाहर आने के लिए क्यू q दबायें
man सिस्टम का मैन्यूअल pager है प्रत्येक तर्क जो man को दिया जाता है वह साधारणतः एक program का name utility यानि उपयोगिता या function होता है
इन तर्कों से जुड़े हुए मैन्यूअल पेज को फिर ढूँढकर दर्शाया जाता है
यदि एक section प्रदान किया है यह man को मैन्यूअल में से उसी section की ओर देखने के लिए कहेगा
default एक्शन यह है कि सारे उपलब्ध sections में खोजे और वह भी एक पूर्वनिर्धारित क्रम में और पाए गए पेज में से search पहला पेज दिखाए भले ही वह पेज कई sections में मौजूद है
आप man command के बारे में ही अधिक जानने के लिए मैंन command का उपयोग कर सकते हैं
terminal पर जाएँ और man space man type करें और enter दबायें
इससे बाहर आने के लिए क्यू q दबायें
man command में कई options हैं
यहाँ मैं आपको ज्यादा उपयोगी वालों के बारे में बताऊँगी कभीकभी हमें पता होता है जो हम करना चाहते हैं लेकिन सही command नहीं पता होती तब हम क्या करे
mank option प्रदान करता है जो एक कीवर्ड को लेता है और फिर commands की सूची और उनका संक्षिप्त उद्देश्य बताता है
उदाहरण के लिए directory बनाने के लिए हमें सही command का पता ना हो
तो हम command prompt पर जा सकते हैं और man space minus k space directories type करें और enter दबायें
अब हम प्रत्येक commands खोज सकते हैं ताकि देख पाएँ कि असल में हमें क्या चाहिए
यही चीज़ apropos command का उपयोग कर भी प्राप्त कर सकते हैं
command prompt पर apropos space directories type करें और output देखने के लिए enter दबायें
कभीकभी हमें अधिक विवरण की ज़रूरत नहीं होती हमें सिर्फ ये जानना होता है कि command क्या करती है
उस स्थिति में हम whatis command या man –f command का इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों ही command के बारे में एक line का विवरण देते हैं
terminal पर जाएँ terminal को clear करने के लिए clear type करें
अब whatis space ls type करें और enter दबायें
कुछ commands में कई options होते हैं हो सकता है कि एक commands के विभिन्न options की सूची हम प्राप्त करना चाहें
तब हम –help option का इस्तेमाल करते हैं
command prompt पर जाएँ और ls space minus minus help type करें और enter दबायें
मैं ऊपर scroll करुँगी ताकि आप इस मैन्यूअल पेज पर सारे options देख सकें
लिनक्स spoken tutorial के इस भाग के लिए बस इतना ही spoken tutorial talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय साक्षरता mission ने ict के माध्यम से समर्थित किया है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
यह script देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना अब आप से विदा लेती हूँ इस ट्यूटोरियल में शामिल होने के लिए धन्यवाद